जो की एक आदमी अपनी तस्वीर खींच रहा है।

और कुछ भैया लॉन्ग जंप भी कर रहे हैं।

डंबल्स उठा रहे हैं कुछ जॉगिंग कर रहे हैं और कुछ वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं।

और ऊपर एक बोर्ड है स्टेट बैंक ए_टी_एम --

हरियाली है व बन बंजर नहीं है।

व्हाइट कलर की टाइल्सो पर चल रहा है।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

जोकि एक चिप्स के दुकान की है।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

कि यहां पर एक तस्वीर खींची गई हैं।

टायर्स ही टॉयर रखे हुए है।

मॉल टाइप शॉप की है इसमें कई सारे लोग लोग आ जा कर रहे हैं।

और यहां पर कई सारी शरटे भी लटकी है।

हैं और सामने की तरफ एक सफेद रंग की चेयर --

इस चित्र में हम देख सकते है कि यहां पर कई सारे लोग--

टोल नाके की है इस टोल पर--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

और कुछ टेबलें भी रखी हुई हैं।

कि यहां पर एक तस्वीर खींची गई है।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

और यहां पर कई सारे लोग एक साथ मिलकर--

यहां पर लाल काले नीले हरे सफेद रंग की एक्टिवा की--